और बाहर में कुछ अ घास-फूस लगी हुई है और यहाँ ऊपर में कुछ पेड़ दिखते हैं और एक ठो आसमान दिख रहा है ।

और वो दीवारों में कुछ लिखा हुआ है ।

यहाँ सामने में एक हेलीकाप्टर खड़ा हुआ है जो की --

पीछे में एक अ रास्ता दिख रहा है। ऊपर में आसमान दिख रहा है। साइड में कुछ पेड़ दिख रहे है। जो की अ अ--

कुछ अ कांच से बनी हुई अ खिड़कीये टाइप कुछ है बिल्डिंग में |

आदमी जा रहा है एक खड़ा हुआ है एक झुककर नीचे देख रहा है और रेड कलर के कपड़े प --

ये शो पत्तियों का कलर कुछ अ कुछ ग्रीन है अ कुछ येलो है और ये जो शो पत्तियां है थोड़ा --

दो लोग खड़े हुए है | रात का समय है और ऊपर मे बैठ काफी एक फोकस गाड़ी लाइट लगी हुई है ।

और व्हाइट कलर से होता है कुछ गुलाबी कलर से और जो --